बिल्डिंग है जिसमें काम चल रहा है छत डल रही है यहां पर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं और सामने यहां पर पिंक कलर की की बिल्डिंग बनी हुई हैं।--

का सीन है जहां पर बहुत सारी भीड़े नजर आ रही है और बहुत सारे लोग नजर आ रहे है और ये बिल्डिंगों के बीच में --

रखे हुए है उनके भगवान जी की तस्वीरों पर मालाए चढ़ी हुई है और यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है इसने यहाँ पर पूजा की तैयारी करी है।

अ और ये ब्रिज के ऊपर ग्रीन ग्रीन हरा-हरा बहुत सारी धुआँ --